यहाँ पर सेब नही यहाँ पर कुछः सेब भी दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर कुछः सेब भी दिखाई दे रहे हैं ।

मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर सेब-- मुझे यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है ।